ये गार्डन जैसा बना हुआ है जहाँ पे घांस लगा हुआ है और बहुँत सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई पड़ रहें हैं यहाँ पे सामने एक स्कूल का पिक है यहाँ पर सामने एक बच्ची जाती हुई दिखाई पड़ रही है उसने बैग लिया हुआ है।

एक ब्लैक कलर का गेट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर पीछे एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है सामने दो लोग दिखाई पड़ रहे है यहाँ पर साइड मे एक बाइक के पास एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे खिड़की भी दिखाई पड़ रही है पीछे एक मकान ब्लैक कलर का दिखाई पड़ रहा है पीछे बहुत सारे पेड़ दिख रहे-- ।